और यहाँ पर गद्दी पड़ी हुई है। सीमेंट के बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।

औ कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक आदमी अंदर जा रहा है।

कैमरा मैन अ फोटो खींच रहें हैं और कैमराज लगे हुए हैं।

यहाँ हमे एक दिवार दिखाई दे रही है एक घर दिखाई दे रहा है और यहाँ पार्क में बच्चे घूम रहे है झूला झूल रहे है।

वहां कुछ लोग बैठे हुए है सीढ़ियों पर और पीछे लोगो के घर दिखाई दे रहे है।

और बहुत ही खूबसूरत है इसकी डिजायनिंग जो की बनाई गई है।

और यहां पे टैक्सीज खड़ी हुई है कुछ लोग बैठे हुए हैं।

औ टेबल्स रखी हुई है इस टेबल पर बास रखा हुआ है फ्लावर पॉट ।